दो व्यक्ति पेट्रोल भरते हुए और एक व्यक्ति स्कूटी के पास खड़ा हुआ दिख रहा है।

डाकघर के बाहर बहोत सारी साइकिल कुछ एक्टिवा कुछ स्कूटर्स और--

चेयर पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में एक रोड दिख रहा है रोड के साइड में फुटपाथ पर दो लाल रंग की साइकिल खड़ी दिख रही हैं।

साइनेड बॉर्डर पर कॉफी एट इट्स बेस्ट लिखा गया है।

इस चित्र में एक खुला मैदान नजर आ रहा है।

घर के साथ एक और नीले रंग का घर दिखाई दे रहा है।

हरे भरे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा सोफा नजर आ रहा हैं।